सामने की ओर जमीन का रंग मिट्टी रंग का है।

सामने की और कई सारी सीढ़ियां भी नजर आ रही हैं।

थाना के अंदर कई सारे अफसर भी खड़े हुए है।

यह दृश्य किसी के सैलून का दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति कार बनाता हुआ नजर आ रहा है।

एक व्यक्ति ने काले कलर की जैकेट पहनी है और दूसरे व्यक्ति ने व्हाइट कलर की टीशर्ट ।

तथा लकड़ियों की व कांचो की मदद से बनी हुई मेज भी दिखाई दे रही है।

आजू बाजू कुछ घर भी नजर आ रहे हैं जिसका रंग लाल वा वाईट में है।

अगल बगल दीवार का रंग व्हाइट व ब्राउन में दिखाई दे रहा है।

एक बड़ी सी कांच की प्लेट नजर आ रही है जिसके ऊपर एक डोसा व एक मिंट वाली चटनी भी नजर आ रही है इसका रंग हरा है।

सामने की ओर एक बैनर लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ होटल कुबेर पैलेस ।

साइड में एक ग्रीन कलर का लकड़ी भी दिखाई दे रहा है।

रूम के नीचे एक पोस्टर दिखाई दे रहा है।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

तथा पीछे की ओर कई सारी बड़ी बड़ी वाशिंग मशीने रखी हुई नजर आ रही है।

इस झील के अगल बगल तथा चारों ओर पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हैं।

यह दृश्य एक कुंभ के मेला का दिखाई दे रहा है जहाँ पर कई सारे लोग भीड़ लगा के खड़े हुए हैं।

साइड की ओर एक ट्रेन भी खड़ी हुई नजर आ रही है।

लकड़ियों की मदद से बनी हुई कई सारी टोपीया भी रखी हुई है।

सामने की ओर एक लंबी व बड़ी सी ब्रिज दिखाई दे रही है।